जीजस का सिंबल है। यहां पर रोजाना अनेक लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं।

यह आलू है इन आलुओं पर बोहोत सी मिट्टी लगी हुई है।

यहाँ एक मैदान है। इस मैदान से कुछ सीढ़ियाँ गई हुई हैं एक ब्रिज की ओर --